चारों तरफ चेयर और ड्रा लगा हुआ है।

ईंटे पत्थर है जहां दो आदमी इसके अंदर से निकल रहे हैं।

ये मशीन खड़ा नजर आ रहा है ऊंचे-ऊंचे पहाड़ है।

मैं देख पा रही हूं यहां एक बहुत बड़ा मंदिल है।

दरवाजे बंद है और सामने एक पेड़ का टहनी--

बहोत सारे सोफे रखे हुए हैं और एक--